सैलून के बाहर शीशे का गेट लगा हुआ है।

सैलून के ऊपर बाल दाढी लिखा हुआ है।

सैलून के अंदर कुछ लोग दिखयी दे रहे है कई सारे सामान भी दिखाई दे रही है।

यह पिक्चर समुन्द्र की लग रही है।

सफेद और नीले रंग के है उसमें कई सारे लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

इस पिक्चर में कुछ विद्यार्थी दिखायी दे रहे है पास ही एक सिस्टर भी दिखायी दे रही है।

दिखायी दे रही है कुछ गाडीया बनती हुई दिखायी दे रही है कुछ गाडीया --

इस पिक्चर में एक सड़क दिखाई दे रहा है।

इसमें कई सारे लोग भी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस पिक्चर में एक बड़ा दुकान दिखाई दे रहा है एक आदमी दुकान में बिकाई दे रहा है --

दुकान में लकड़ी से छोटे छोटे रॅक बने हुए है।

बैनर लगा है उस पे केंद्रीय विद्यालय लिखा हुआ है।

सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है वह सफेद रंग की है बिल्डिंग में कई सारे खिड़कियां लगी हुई हैं।

सजावट हुई है चर्ज के बाहर नीले व सफेद रंग के गुब्बारों से भी --

सजावट की गई है बाहर कई सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर टीन की छावनी बनी हुई है लोहे की कई सारे रॉड लगे हुए हैं।

व सफेद रंग का है।

कुछ खिड़कियां भी दिखाई दे रही हैं खिड़कियों में शीशे के दरवाजे लगे हुए हैं।

उस उसके ऊपर छावनी भी बनी हुई है एक बड़ा ट्रक भी दिखाई दे रहा है।

एक बड़ा तिरंगा लहराता हुआ दिखाई दे रहा है सामने एक बड़ा --

एक गेट भी लगा हुआ है पास ही एक ऑटो रिक्शा दिखाई दे रहा है।

वह बहुत ही हरा भरा है उसमें घास उगा हुआ है।

इस पिक्चर में एक हॉल दिखाई दे रहा है हॉल में कई सारी मशीने रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

पास दो छोटे-छोटे बैनर लगे हुए हैं।

आस पास कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे है कुछ बड़े व कुछ छोटे पेड़ है।

इस पिक्चर में एक आदमी बैठे हुए दिखाई दे रहा है यह किसी --

आसपास पत्थरें हैं नीचे बहत सारे पानी इकट्ठे हैं।

इन सभी के सर पर टोपियां लगी हुई हैं दो काले छतरी भी दिख रही है।

सामने एक अ मकान दिखाई दे रहा है वह पीले रंग का है।

पास ही एक आदमी लेटे हुए दिखाई दे रहा है दूसरे आदमी ने उसके पैर पकड़े हुए हैं।

दुकान में कई तरह कि बोरिया भी रखी हुई है कई तरह के सामान भी रखी हुई है।

जैसे सामने प्याज व आलू बोरी में दिख रहा है।

इस पिक्चर में एक बड़ा मॉल दिख रहा है इसके ऊपर शॉपर स्टॉप लिखा हुआ है।